इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहां बच्चे आराम से खेल रहे हैं और जगह बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है।

इस चित्र में एक बड़ीसी हवेली दिख रही है इसके आस पास गाड़िया खड़ी है आस पास पेड़ लगे हुए है बहोत बड़ी जगह दिख रही है आस पास मोटर सायकल भी खड़ी हुई है।

जिम में लाइट भी है और जिम आसपास सामान भी रखा हुआ है फरश भी बहुत साफ़-सुथरा है।